यहाँ पर मुझे एक गार्डन का दृश्य दिखाई दे रहा है ।

घर पर दिखाई दे रहा है जो की बहुत पुराना नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत ही सुन्दर बादल दिखाई दे रहे हैं ।